यहाँ पर जिम क्लासे हैं और यहाँ पर अनेक उपकरण रखे हुए हैं जिम करने के लिए और यहाँ पर एक टायर भी रखा हुआ है जो कि टायर --

यहाँ पर द- दो डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं और वो एक जानवर का इलाज कर रहे हैं और उन्हें इंजेक्शन लगाया जा रहा है डॉक्टर ने --

यह एक स्कूल है और वह बोहोत बड़ी बिल्डिंग है और यहां पर कोई फंक्शन हो रहा है और तिरंगे की मालाएं भी बनी हुई हैं और मां सरस्वती की--

और यहाँ से डीजल पेट्रोल का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हो जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहनों में डालकर जा सकते हैं।

सब्जी मंडी है और यहाँ पर हरी मिर्च दिखाई दे रही है। पत्ता गोभी दिखाई दे रहे हैं। लाल मिर्च दिखाई दे रही है। अनेक प्रकार की सब्जियां दिखाई दे रहीं है और कुछ लोग खरीद रहें हैं और कुछ लोग यहाँ पर बेच रहे --

अपने खेत में पानी लगा रहा है और इसके खेत में बहोत ही छोटी प्यारी हल्की घास दिखाई दे रही है जोकि गेहूँ की खेती कर रहे हैं और यह बहोत ही उत्तम और खाने योग्य फसल है।

यह एक किराना स्टोर की दुकान है जहां पर शैम्पू क्रीम कुरकुरे चिप्स नमकीन टॉफी नाइफार ढाइफर आदि चीज़ें टंगी हुई हैं।